यहां पर यह दोनों कारीगर एच_पी लैपटॉप पर काम कर रहे हैं।

टायर्स की दुकान खुली हुई है इस टायर की दुकान का नाम है शीर्षद गुरु टा--

इस हॉस्पिटल में कई सारे मरीज लेटे हुए--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

कई सारे लोग खडे हुए है जैसे कि कोई अंकल --

यहां पर दो अंकल खड़े हुए हैं एक पेट्रोल पंप के सामने।

यहां पर हर तरह के कपड़े मिलते हैं जैसे लेडिस की कुर्ती लान्छा और--

रोड पर बहुत सारी पत्तियां पड़ी हुई हैं और ऐसा लग रहा है ये सनसेट का मौसम है।

रियल टाइप लग रहा है इसके पास में बहुत सारी हरीयाली भी लगी हुई--

एक चित्र है इस चित्र मे हम देख सकते है कि यहां पर एक तस्वीर खींची गई है जो कि कब की है जो कि जो कि एक--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

जोकि एक बिल्डिंग की है यहां पर एक कंपनी खुली गई है जिसके बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है जो कि एक--

ये एक चित्र है इस चित्र में हम देख सकते है की यहां पर एक तस्वीर--

एक रस्सी से बंधे हुए हैं उनकी पूछ भी अभी सीधी है और उसके पास में ही--

यह एक चित्र है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तस्वीर खींची गई है जो की एक दीदी की है। वह दीदी एक महल टाइप में जा रही है।

चाय पी रहे हैं और यहां पर आना जाना हो सकता है कोई--